चित्र दिखाई दे रही है वहाँ पर बहुत सारी स्कुटरे भी दिखाई दे रही है वहाँ स्कुटरो पर कुछ गर्लसे भी दिखाई दे रही है वो मतलब वहापर अक्टीवा भी दिखाई दे रही है वहाँ पर गाड़ी बाइक भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

वहाँ पे कुछ है बहोत सारे वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे है कोई टैक्सी लग रही कोई बस भी लग रही है कार भी लग रही है कुछ मोटरसाइकील भी लगती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर छोटी-छोटी वृक्ष दिख रहे हरे-भरे दिख रहे है बड़े ऊचे वृक्ष लग रहे है पहाड़ों पे कई प्रकार का पेंट दिखाई दे रहा है लाइट भी आती हुई दिखाई दे रही अच्छी सी लग रही है।

कुछ बरसाती बादल दिख रहे है बादलों में बहोत सारे पेंटिंग भी दिखाई दे रहे है कुछ नीले दिख रहे है कुछ ब बारीक़ कलर के दिख रहे है वहाँ पर जो हरियाली - सी दिख रही है व्रक्षण की वहाँ पर बहोत सारे वृक्ष है बहोत सारा धुँआ भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर --

मुझे कुछ बहुत सारी बिल्डिंग सी मतलब मकान सा दिख रहा है वहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा हो वहाँ पर कुछ माइक भी दिखाई दे रही है।

ये कुछ बहुत सारे सीन देखने को मिल रहा है बहुत सारी लाईटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर कुछ मस्जिद कि सुरंग सी बनी हुई दिखाई दे रही है बस--